बगल में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

इसके फर्श में टाइल्स लगे हुए हैं।

इस फोटो में बहुत बड़े बड़े पत्थल एवं हल्का सा पहाड़ दिख रहा है।

इस घर के पीछे एक बहोत बड़ा पहाड़ है।

यह एक दुकान का फोटो है जिसके अंदर सीलिंग में बहोत सारे लाइट्स लगे हुए हैं और बहोत सारे सामान भी रखे हुए हैं।

उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ है और आकाश नीला है।